किचन के लिए रूम के लिए बाथरूम के लिए सारे चीज के लिए टाइल्स हैं चेयर भी हैं फैन भी है।

यहाँ पे अपने ब गारे में बात करके अपने अनुभव को बता के आप भी यहाँ पे काम कर सकते हैं।

अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो यहां से वो तुरंत जाके उस आग को बुझाती है।

यह एक कथकली कर रहा है भारतनाट्यम जैसा डांस कर रहे हैं इसका ड्रेस बहुत ही अच्छा है ये अपनी तरह के ट्रेडीशनल ड्रेस को पहना हुआ है।

यह एक ड्रांस ए प्रफॉर्म कर रहा है अगर ये किसी भी स्कूल में डांस प्रफॉर्म करके प्राइज जीतने जा रहा है।

ये देख सकते हैं इसका अ पोज अच्छा है इसमें कारपेट रेड कलर का है बैकग्राउंड एकदम साफ ब्लैक कलर के दिख रही है।

आप चाहें तो आप भी आ के यहां पे पेट्रोल पंप पे वर्क कर सकते हैं कोई भी सारे वर्कर्स को अच्छे प्राइस में वर्क करने दिया जाता है यहां पे आप भी आइए।

डॉक्टर यहाँ अच्छे से बैठ के आपको फ्री में अ देखेंगे और जो भी प्राइस होगा दवाई बताए देंगे।

यह एक सिलेंडर का गोदाम है यहां पे बहुत सारे सिलेंडर हैं बहुत सारे लोग आके लाइन लगाके--

लगता है आप चाहे तो आप भी यहाँ से अपने गैस सिलेंडर को होम डिलीवरी मंगवाइए अच्छे तरीके से।

यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पे मैप बनाए हुए हैं घर को बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए विशे एक बिल्डिंग है।

कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे अपने बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ने दीजिए और यहाँ पर बच्चे मन लगा के पढ़ते हैं अ वो खुद ही अच्छे तरीके से पढ़ के पढ़ाई को इंजॉय --